आदमी टेंपो हाईवे --

एक आदमी खड़े हैं टेंपो तीन खड़े हैं।

अंकित पेट वॉल्स ऑल टाइप्स ऑफ़ डॉग्स एंड केयर सेल्स एंड ट्रेड हर ।

टाइल्स लगी है रेलिंग्स है लाइट है तार है खंभा है पेड़ है।

चैंपियन प्लस सीमेंट्स प्रिज़्म चैंपियन प्लस --

दरवाजा है लाइट लगी हुई है।